यह कोई घर है जहाँ पे लिखा हुआ है तेरे गम सब सुखी में बदलेगा।

यह हमारे जमुई बिहार के ऑफिस है। यहां पे गाड़ी लग रखी गई हैं ।

से गेट लगाया नहीं है। यह फिट नहीं किया गया है। यह गेट ऐसे ही खड़े हैं।

यहाँ कोई सजावट की गई है कोई फंक्शन है।

यहां पे बोहोत सारे लोग आते हैं। पूजा करने मंनत मांगने सभी लोग यहां पूजा करने आते --

यह फिटर वर्कशॉप है यहाँ सभी लोग अपने-अपने काम पर आते हैं।

ये मंदिर है इसके ऊपर में दो बाघों की चित्र छाया दी गई है।

सभी ने एक जैसे जूते पहने हुए हैं।

यहाँ पर सिर्फ जेंट्स के जूते चप्पल मिलते हैं।

यह मूर्ति है यह मूर्ति को छूने की इजाजत नहीं है यह बोर्ड पर लिखी हुई है।

यह कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है कॉलेज के बाहर के जगह बहोत सु --